जंगल से फोटो भेजा गया है जंगल में बहुत ही ठीक ठाक है।

इसके बाजु बाउंड्री वगेरा भी है सब ठीके ठाक है और घर के नजारा भी--

ये भी भगवान जी बैठे हुए है यहाँ पे लेकिन बहुत ही ठीक दिख रहा है रंग वगैरह भी लगा दिए है ।

लेकिन यहाँ पे बहुत ही है जाने के लिए लेकिन बहुत ही ठीक है थ --।

ये कही का पूजा घर है बहुत ही ठीक दिख रहा है शो ब्यूटीफुल नाइस यहाँ पे कुछ रंग वगैरह भी लगाए हुए है।

भी ठीके है शायद हम भी जाएंगे कभी जरूर टेंशन मत लीजिये।

ये पहाड़ भी ठीक ठाक दिख रहा है शो ब्यूटीफुल नाइस ।